ऊपर मै टाइल्स है और सब बहुत अ --

घर है दीवाल है ये खिड़की है खिड़की को सजाया गया है |